दीवाल पे कुछ फोटो फ्रेम्स भी टंगी हुई है।

इस आदमी के पीछे काफी सारी बड़ी-बड़ी घनी-घनी हरे कलर की झाडियाँ भी --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

बोट भी दिखाई दे रही है और आसमान भी काफ़ी अच्छा लग रहा है।

हेंगर पर काफी सारे अलग-अलग कलर के मेंस वियर शर्ट्स टंगे हुए हैं।

सामान भरते हुए नज़र आ रहे है। यहाँ पर लाइट्स की व्यवस्था अच्छी नहीं है।

ये बस शायद अभी नई-नई ली गईं हैं इस --